और यहाँ बहुत बड़ी पत्थरों की चट्टानें है जहाँ से पानी गिर रहा है।

अलग - अलग केबिन टाइप के बने हुए है बहुत सारे चे टेबल चैयर लगी हुई है।

और जो की हिन्दी ओर इंग्लिश दोनों मे ही --

और जो की एक ही सर्कल मे बने हुए है और बहुत सारी मूर्तिया बनी--

और दूर बहुत पहाड़ी धुंधली धुंधली पहाड़ियां दिख रही है।

यहाँ पर एक स्टेशनरी शॉप है।

और यहाँ पर बड़ी - बड़ी स्लाइडस लगी हुई है स्लाइडस बनी हुई है राउंड शैप मे स्लाइडस दी गई है।

यहाँ पर एक कुईया टाइप की दिख रही है जो की बडा स हॉल दिख रही है बहुत गहरा हॉल दिख रहा है।

डेकोरेट की कर रहै है ग्रीन कलर की नीचे कारपेट आा बिछाई गई हैं।

और साआा सामने कुछ मैदान है जिसमे छोटी छोटी सी घास छोटे छोटे से पौधे लगे हुए है।